ढेर सारी लड़की अच्छी-खासी डांस की कला दिखाते हुए बहुत खूबसूरत --

स्विमिंग स्विमिंग पूल की अच्छी खासी व्यवस्था में बनाए हुए हैं पानी की फुव्वारा चारों ओर की ओर आते हुए उसमें कुछ दो-तीन दो या तीन लोग तैरते हुए --

क्यूट सी है अच्छे खासे जगह की माहौल वातावरण भी अच्छी खासी --

यहाँ अथी फोर व्हीलर वगैरा लगे है अच्छे खासे।

अगल-बगल मे अच्छे-खासे कुछ पर्दे-वर्दे लगाये गये है और गाछ-वृक्ष और आस-पास मे बिल्डिंग वगेरा भी है और लोगो की भीड़ मार्केट में बढ़ रही है।

बस एक ठीक ठाक कर रहें हैं ये तो एक आसपास में देख सुन रहें हैं जिस तरह से सब चीज कर रहें हैं अच्छे खासे हैं।